और ये है दिवारो पे भी कांच लगा हुआ है।

हरियाली है आगे कि और जंगल है और नीचे पानी भरा हुआ है छोटे छोटे पेड है।

ये एक बनी हुई है बडी सारी घडी बनी हुई --

इस चित्र मे खिलाड़ी खेल रहे है ये स्टेडियम नीचे हरियाली बिछी हुई है।

ये चित्र चर्च की है इसमें फोटो चित्र लगा हुआ है और ईसाई यों के साइन बने हुए हैं टेबल कुर्सी लगे हैं।

इस चित्र मे कॉफी की दुकान है ऊपरस भी--

ये चित्र चर्च की है इसमें सामने की और मूर्ति बना बनी हुई है और पीछे चर्च बना हुआ है आगे कि और ढका हुआ है।

इस चित्र में हरियाली ही हरियाली है पीछे की और नीला है आगे छोटे पेड़ और घना गंगो- जंगल है।